अह लाइटर टंगे हुए हैं स्पून के रेड और ग्रीन स्टैंड टंगे हुए हैं।

बॉटल की शेप में पत्थर का कुछ बना हुआ है।

कोन के तरीके में है डिब्बे में है कुल्फी में है।

रेड कलर की चेयर्स लगी हुई है ग्रीन कलर के खंभे हैं और एक पंखा लगा हुआ है।

डिस्पेंसरी की इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं चेयर ब्लू कलर की है।

इन मशीनरीस को येलो कलर से आउटलाइन किया हुआ--

चर्च दिख रहा है जो कि पिंक कलर से डेकोरेट किया गया है।

मुझे ये रोड साइड रेस्टोरेंट दिख रहा--

दूसरी साइड लिखा है राजपुरोहित बाजार--

बालकनी के सामने बहोत सी हरियाली है।

तालाब के ऊपर से झरना बह रहा है।

जो कि पूरा रेड कलर का है।

दोनों तरफ दीवारों पे आदमी खड़े हैं एक आदमी ने ऑरेंज कलर का पजामा कुर्ता पहना है।

जहां पे एक बड़ी गोल्डन मूर्ति है।

सामने व्हाइट कलर की चेयर्स लगी हुई --

और लाइटिंग से सजाया गया हुआ है।

यह एक बड़ी सी नदी दिख रही है।

जहां पे ट्रेकिंग का पूरा ढांचा बनाया गया है।

साइड में लोग यूनिफॉर्म पहने हुए खड़े हुए हैं।

जहां पे वाइपर ब्रशेस स्क्रबर ये टंगे हुए हैं।

साइड में बर्तन भी टंगे हैं।

नर्सरी में बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।